इस इमेज में एक नदी दिख रही है नदी--

हाई इमेज में कंस्ट्रक्शन मैनेजर खड़ा हुआ है इमेज --

इस इमेज हमें ऊपर आसमान दिखाई दे रहा हैं ।

है उसमें बहुत से कप रखे हुए है और नी --

वाइट कलर का घर के सामने एक झूला दिखाई दे रहा हैं ।